यहाँ देखिये एक दुकानदार भी है जो बात भी कर रहे है यहाँ बुक दुकान भी है यहाँ बुक की ही सेलिंग होती है।

और इधर ग्राहक भी बहोत बहु हैं और इधर तिराजु भी हैं और इधर का बोलते हैं की खरीदने वाले भी हैं और बेचने वाले भी हैं।

और देख के इधर दो -दोठो आदमी भी हैं और फोटो वगैरा भी खींच रहे हैं और यहाँ बाल कटाने की सही व्यवस्था हैं और इधर--

और देखिये यहाँ बहोत ही बढ़िया एक नदी दिखाई दे रहा है और उस नदी में देखिये पानी जहाज भी चल रहे है और इधर बहुत आदमी भी है।